यहाँ पर हरा-भरा मैदान है और मैदान में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और इसमें हरी घास उग रही है जिससे मैदान की --

यह एक जल में स्थित होती है और यहाँ पर मछली पाल कर उनको जल से निकाल कर बाहर लाते हैं और उन्हें काटकर बेच देते --

यह एक ईदगाह है जहाँ पर मुंडन लोग शुक्रवार वाले दिन नमाज़ पढ़ते हैं और ईदगाह स्थान होता है।